यहाँ पे बहुत सी महिलाए है जो की योगा कर रहे है और इसके सामने बड़ा-बड़ा बस भी खड़ा है इसके सामने बड़ा-सा स्कुल है।

यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे है जो देखने में काफी सुंदर लग रहे है सब को यहाँ पे सब के सब सफेद कपड़े पहन के आए है जो की यह पूजा कर रहे है और कुछ पढ़ रहे है।